यह एक बैंक है यह बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है यहाँ बहुत सारे लोग इस बैंक में काम कराने के लिए आए हैं ।

बैंक के बाहर बोहोत सारे बाइक खड़ी है। बोहोत सारे लोग पैदल भी इस बैंक में आए हैं।

यहाँ सभी तरह की मोबिल मिलते है। यहाँ के स्टोर सी.र.ब. सभी मोबिल मिलते है।

यह एक स्कूल है नाक बहुत सारे बच्ची इसी स्कूल में आये हुए हैं सभी बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं ।

यहाँ लोग चाट खाने के लिए बोहोत दूर-दूर से आते है। यहाँ गुपचुपे खाने के लिए आते है। यह दुकान बोहोत अच्छा चौमिन चाट --